ये सड़क है और सभी लोग सड़क पर सवारी कर रहें हैं और देख सकते है कई लोग पैदल जा रहें हैं तो कई लोग बाईक से जा रहे हैं। कहीं लोग साइकिल से जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत --